और दुकान की फिटिंग एल्युमिनियम के पाइपों से हो रही है।

यह एक लग्जरी सादी की इमेज है।

जैसे गद्दा बेड शीशा--

अलग अलग प्रकार के सारे सामान रखे हैं। नमकीन टॉफियां अलग अलग रखी हुई --

यह एक पानी का झरना है जिसमें अलग अलग प्रकार के लगी हुई है।

पत्थर का ढेर भी लगा हुआ है और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी है।

दीवालों पर अलग अलग प्रकार के चित्र बैठने की सीटें रखी हुई हैं।

यह एक सेवा योजना कार्यालय है।

यह एक माचिस के तीले से बना हुआ गुलदस्ता--

यह एक मूंगरा मछली है जोकि थाली में रखी हुई है।

और दो आदमी पास पास खड़े हैं।

अलग अलग प्रकार का कलर हुआ हुआ है और बैलून लगे हुए हैं स्टैंड रखे हुए हैं।

खिड़कियां लगे हुए हैं। ग्रिल लगी हुई हैं।

यह एक कार्यालय परियोजना प्रबंधक निर्माण इकाई उत्तर प्रदेश जल निगम सहारनपुर में है।

यह एक केमिस्ट्री लैब है जिसमें अनेकों प्रकार के केमिकल रखे हुए हैं।

जो कि अभी तैयार की गई है।

और इन मशीनों से अलग अलग प्रकार के समान प्रोडक्ट बनाए गए हैं।

ड्रम रखा हुआ है सोटा रखा हुआ है और कुर्सी रखी हुई है खिड़कियां लगी हुई हैं।

इस पिक्चर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही हैं और बाईकें खड़ी हैं।

इस आदमी के दोनों घुटनों पर चोट लग गई है।

जो कि इतने पट्टी करवा रखी है और इसके बराबर में एक बैग रखा है।

यह एक जिम है जिसमें अलग अलग प्रकार की मशीने और दीवार पर कुछ बैलून लगे हुए हैं।

यह एक मिट शॉप है जिसके सामने तीन आदमी खड़े हुए हैं।

और दीवारों पर लाइट लगी हुई है।

यह एक लैपटॉप की शॉप है।

और शॉप के सामने लैपटॉप का बैनर लगा हुआ है और दो दुकान सामने है।